मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
शायद ही कोई भारतीय हो सकता है जिसको हमारे सशस्त्र बलों पर हमारे सेना के जवानों पर गर्व न हो
प्रत्येक भारतीय चाहे वो किसी भी क्षेत्र जाति धर्म पंथ या भाषा का क्यों न हो हमारे सैनिकों के प्रति अपनी खुशी अभिव्यक्त करने और समर्थन दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है
कल भारत के सवासौ करोड़ देशवासियों ने पराक्रम पर्व मनाया था
हमने 2016 में हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया जब हमारे सैनिकों ने हमारे राष्ट्र पर आतंकवाद की आड़ में प्रॉक्सी वार की धृष्टता करने वालों को मुँहतोड़ ज़वाब दिया था
देश में अलगअलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एक्सिबिशंस लगायेताकि अधिक से अधिक देश के नागरिक खासकर युवापीढ़ी यह जान सके कि हमारी ताक़त क्या है
हम कितने सक्षम हैं और कैसे हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर के हम देशवासियों की रक्षा करते हैं
पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है
और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है
मैंने भी वीरों की भूमि राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया अब यह तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ ज़वाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति और उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे
हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की सम्प्रभुता की कीमत पर कतई नहीं
भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध और समर्पित रहा है
20वीं सदी में दो विश्वयुद्धों में हमारे एक लाख से अधिक सैनिकों ने शांति के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और यह तब जब हमारा उस युद्ध से कोई वास्ता नहीं था
हमारी नज़र किसी और की धरती पर कभी भी नहीं थी
यह तो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी
कुछ दिन पहले ही 23 सितम्बर को हमने इस्राइल में हैफा की लड़ाई के सौ वर्ष पूरे होने पर मैसूर हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स के हमारेवीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने आक्रान्ताओं से हैफा को मुक्ति दिलाई थी
यह भी शांति की दिशा में हमारे सैनिकों द्वारा किया गया एक पराक्रम था
आज भी यूनाइटेड नेशंस कीअलगअलग पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है
दशकों से हमारे बहादुर सैनिकों ने ब्लू हेलमेट पहन विश्व में शांति कायम रखने में अहम भूमिका निभाई है
मेरे प्यारे देशवासियोआसमान की बातें तो निराली होती ही हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है
हमें सुरक्षा का अहसास दिलाया है
गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोगों को परेड के जिन हिस्सों की सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है उनमें से एक है फ्लाई पास्ट जिसमें हमारी एयर फोर्स हैरतअंगेज कारनामों के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है
8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं
1932 में छह पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयर फोर्स में शामिल हो चुकी है
यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है
देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने ह्रदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ
1947 में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए ये सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुँच जाएँ
वायुसेना ने 1965 में भी दुश्मनों को मुँहतोड़ ज़वाब दिया
1971 मेंबांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई कौन नहीं जानता है
1999 करगिल की घुसपैठियों के कब्ज़े से मुक्त कराने में भी वायुसेना की भूमिका अहम रही है
Tiger हिल में दुश्मनों के ठिकानों में रातदिन बमबारी कर वायुसेना ने उन्हें धूल चटा दी
राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है
तूफ़ान बवंडर बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज़्बा अद्भुत रहा है
देश में जेंडर इक्वालिटी यानी स्त्री और पुरुष की समानता सुनिश्चित करने में एयर फोर्स ने मिसाल कायम की है और अपने प्रत्येक विभाग के द्वार देश की बेटियों के लिए खोल दिए हैं
अब तो वायुसेना महिलाओं को शॉर्ट सर्वाइस कमिशन के साथ परमेनेंट कमिशन का विकल्प भी दे रही है और जिसकी घोषणा इसी साल 15 अगस्त को मैंने लाल किले से की थी
भारत गर्व से कह सकता है कि भारत की सेना में सशस्त्र बलों में पुरुष शक्ति ही नहीं स्त्रीशक्ति का भी उतना योगदान बनता जा रहा है
नारी सशक्त तो है अब सशस्त्र भी बन रही है
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले दिनों नेवी के हमारे एक अधिकारी अभिलाष टोमी अभिलाष टॉमी वो अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे
पूरा देश चिंतित था कि टोमी को कैसे बचा लिया जाए
आपको पता है अभिलाष टोमी एक बहुत साहसीवीर अधिकारी हैं
वे अकेले कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी बिना की एक छोटी सी नाव ले करके विश्व भ्रमण करने वाले पहले भारतीय थे
पिछले 80 दिनों से वे दक्षिण हिन्द महासागर में गोल्डेन ग्लोब रेस में भाग लेने समुंदर में अपनी गति को बनाये रखते हुए आगे बढ़ रहे थे लेकिन भयानक समुद्री तूफ़ान ने उनके लिए मुसीबत पैदा की लेकिन भारत के नौसेना का ये वीर समुंदर के बीच अनेक दिनों तक जूझता रहा जंग करता रहा
वो पानी में बिना खायेपिये लड़ता रहा
जिन्दगी से हार नहीं मानी
साहस संकल्पशक्ति पराक्रम एक अद्भुत मिसाल कुछ दिन पहले मैंने जब अभिलाष को समुंदर से बचा करके बाहर ले आये तो टेलीफोन पर बात की
पहले भी टोमी से मैं मिल चुका था
इतने संकट से बाहर आने के बाद भी उनका जो ज़ज्बा था उनका जो हौसला था और फिर एक बार ऐसा ही कुछ पराक्रम करने का जो संकल्प उन्होंने मुझे बताया देश की युवापीढ़ी के लिए वो प्रेरणा है
मैं अभिलाष टोमी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनका ये साहस उनका पराक्रम उनकी संकल्प शक्ति जूझने की और जीतने की ताक़त हमारे देश की युवापीढ़ी को ज़रूर प्रेरणा देगी
मेरे प्यारे देशवासियो 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्र के लिए इस दिन का क्या महत्व है इसे बच्चाबच्चा जानता है
इस वर्ष का 2 अक्टूबर का और एक विशेष महत्व है
अब से 2 साल के लिए हम महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के निमित्त विश्वभर में अनेक विविध कार्यक्रम करने वाले हैं
महात्मा गाँधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है
Dr मार्टिन लुथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियाँ हर किसी ने गाँधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लम्बी लड़ाई लड़ सके
आज की मन की बात में मैं आपके साथ पूज्य बापू के एक और महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करना चाहता हूँ जिसे अधिकसेअधिक देशवासियों को जानना चाहिए
nineteen फोर्टी ओने में1941 में महात्मा गाँधी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यानी रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में कुछ विचारों को लिखना शुरू किया
बाद में 1945 में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब उन्होंने उस विचार की संशोधित प्रति तैयार की
पूज्य बापू ने किसानों गाँवों श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा स्वच्छता शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा है
इसे गाँधी चार्टर गांधी चार्टर भी कहते हैं
पूज्य बापू लोक संग्राहक थे
लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी ये उनके स्वभाव में था
यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया है
उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है
स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने इसे एक व्यापक जनआंदोलन बना दिया
स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महात्मा गाँधी के आह्वान पर समाज के हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया
बापू ने हम सब को एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था जिसे अक्सर गाँधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है
उसमें गाँधी जी ने कहा था मैं आपको एक जन्तर देता हूँ जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ जो सबसे ग़रीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा
क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त हो रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो गाँधी जी का एक जंतर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है
आज देश में बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग बढ़ती हुई उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ता हुआ परचेजिंग पॉवर क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएँ तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा किसके चेहरे पर ख़ुशी आएगी कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इंडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा और ग़रीब से ग़रीब को लाभ होगा तो मेरी ख़ुशी अधिकसेअधिक होगी
गाँधी जी के इस जंतर को याद करते हुए आने वाले दिनों में हम जब भी कुछ खरीद करें गाँधी जी की 150वी जयंती मनाते हैं तब हम जरुर देखें कि हमारी हर खरीदी में किसीनकिसी देशवासी का भला होना चाहिए और उसमें भी जिसने अपना पसीना बहाया है जिसने अपने पैसे लगाये हैं जिसने अपनी प्रतिभा खपाई है उन सबको कुछनकुछ लाभ होना चाहिए
यही तो गाँधी का जंतर है यही तो गाँधी का सन्देश है और मुझे विश्वास है कि जो सबसे ग़रीब और कमज़ोर आदमी उसके जीवन में आपका एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है
मेरे प्यारे देशवासियो जब गाँधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी
शायद उनको मालूम भी नहीं होगा ये कैसे होगा पर ये हुआ भारत को स्वतंत्रता मिली
इसी तरह आज हम को लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में आर्थिक सशक्तिकरण में ग़रीब को ग़रीबी के खिलाफ़ लड़ाई लड़ने की ताक़त देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और मैं समझता हूँ कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है
जैसे विशेष अवसरों पर खादी और हैंडलूम के उत्पाद खरीदने के बारे में सोचें इससे अनेक बुनकरों को मदद मिलेगी
कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटेफटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है
वे कहते थे ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाये हैं इसका एकएक सूत काम आना चाहिए
देश से लगाव और देशवासियों से प्रेम की ये भावना छोटे से कदकाठी वाले उस महामानव के रगरग में रचीबसी थी
दो दिन बाद पूज्य बापू के साथ ही हम शास्त्री जी की भी जयंती मनायेंगे
शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है
उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है
लाल बहादुर शास्त्री जी की ये विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे परन्तु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे
जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है
राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग डेढ़ वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुँचने का मन्त्र दे गए
मेरे प्यारे देशवासियो आज जब हम पूज्य बापू का स्मरण कर रहें हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि स्वच्छता की बात के बिना रह नहीं सकते
15 सितम्बर से स्वच्छता ही सेवा एक अभियान प्रारंभ हुआ
करोड़ों लोग इस अभियान में जुड़े और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं दिल्ली के अम्बेडकर स्कूल में बच्चों के साथ स्वच्छता श्रमदान करूँ
मैं उस स्कूल में गया जिनकी नींव खुद पूज्य बाबा साहब ने रखी थी
देशभर में हर तबके के लोग इस 15 तारीख़ को इस श्रमदान से जुड़े
संस्थाओं ने भी इसमें बढ़चढ़कर के अपना योगदान दिया
स्कूली बच्चों कॉलेज के छात्रों एनसीसी एनएसएस युवा संगठन मीडिया ग्रुप्स कॉर्पोरेट जगत सभी ने सभी ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता श्रमदान किया
मैं इसके लिए इन सभी स्वच्छता प्रेमी देशवासियों को ह्रदय पूर्वक बहुतबहुत बधाई देता हूँ
आइये सुनते हैं एक फ़ोन कॉल
मेरा नाम शैतान सिंह जिलाबीकानेर तहसील पूगल राजस्थान से बोल रहा हूँ
मैं ब्लाइंड व्यक्ति हूँ
दोनों आँखों से मुझे दिखाई नहीं देता मैं टोटली ब्लाइंड हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ मन की बात में जो स्वच्छ भारत का जो मोदी जी ने कदम उठाया था बहुत ही बढ़िया है
हम ब्लाइंड लोग शौच में जाने के लिए परेशान होते थे
अभी क्या है हर घर में शौचालय बन चुका है तो हमारा बहुत बढ़िया फायदा हुआ है उसमें
ये कदम बहुत ही बढ़िया उठाया था और आगे चलता रहे ये काम
बहुतबहुत धन्यवाद आपने बहुत बड़ी बात कही हर किसी के जीवन में स्वच्छता का अपना महत्व है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके घर में शौचालय बना और उससे अब आपको सुविधा हो रही है हम सब के लिए इससे ज्यादा ख़ुशी की बात और क्या हो सकती है
और शायद इस अभियान से जुड़े लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होगा एक प्रज्ञाचक्षु होने के नाते आप देख नहीं सकते हैं लेकिन शौचालय न होने के पहले आप कितनी दिक्कतों से जीवन गुजारते थे और शौचालय होने के बाद आप के लिए कितना बड़ा वरदान बन गया शायद आपने भी इस पहलू को जोड़ते हुए फ़ोन न किया होता तो शायद स्वच्छता के इस अभियान से जुड़े लोगों के ध्यान में भी ऐसा संवेदनशील पहलू ध्यान न आता
मैं आपके फ़ोन के लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो स्वच्छ भारत मिशन केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सफ़ल कहानी बन चुका है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है
इस बार भारत इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन आयोजित कर रहा है
महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन यानी महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन दुनिया भर के सैनिटेशन मिनिस्टर्स और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ आकर स्वच्छता से जुड़े अपने प्रयोग और अनुभव साझा कर रहे हैं
महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन का समापन 2 अक्तूबर 2018 को बापू के 150वीं जयंती समारोह के शुभारम्भ के साथ होगा
मेरे प्यारे देशवासियो संस्कृत की एक उक्ति है न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात् अर्थात् स्वराज के मूल में न्याय होता है जब न्याय की चर्चा होती है तो मानव अधिकार का भाव उसमें पूरी तरह से समाहित रहता है
शोषित पीड़ित और वंचित जनों की स्वतन्त्रता शांति और उन्हें न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ये विशेष रूप से अनिवार्य है
डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में ग़रीबों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किये गए हैं
उन्हीं के विजन विजन से प्रेरित होकर 12 अक्तूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एनएचआरसी का गठन किया गया था
कुछ ही दिनों बाद एनएचआरसी के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैंएनएचआरसी ने न सिर्फ़ मानव अधिकारों की रक्षा की बल्कि मानवीय गरिमा को भी बढ़ाने का काम किया है
हमारे प्राणप्रिय नेता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मानव अधिकार हमारे लिए कोई परायी अवधारणा नहीं है
हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतीक चिन्ह में वैदिक काल का आदर्श सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः अंकित है
एनएचआरसी ने मानव अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा की है साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने में भी सराहनीय भूमिका निभाई है
25 साल की इस यात्रा में उसने देशवासियों में एक आशा एक विश्वास का वातावरण पैदा किया है
एक स्वस्थ समाज के लिए उत्तम लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ीआशास्पद घटना है
आज राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के काम के साथसाथ 26 राज्य मानव अधिकार आयोग भी गठन किया है
एक समाज के रूप में हमें मानव अधिकारों के महत्व को समझने और आचरण में लाने की आवश्यकता है ये ही सब का साथ सब का विकास का आधार है
मेरे प्यारे देशवासियो अक्तूबर महीना हो जय प्रकाश नारायण जी की जन्मजयन्ती हो राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ होता हो ये सभी महापुरुष हम सब को प्रेरणा देते रहे हैं उनको हम नमन करते हैं और 31 अक्तूबर सरदार साहब की जयंती है मैं अगली मन की बात में विस्तार से बात करूँगा लेकिन आज मैं जरुर इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ कि कुछ वर्षों से सरदार साहब की जन्मजयंती पर 31 अक्तूबर को रुन फोर Unityहिन्दुस्तान के हर छोटेमोटे शहर में कस्बों में गाँवों में एकता के लिए दौड़ इसका आयोजन होता है
इस वर्ष भी हम प्रयत्नपूर्वक अपने गाँव में कस्बे में शहर में महानगर में रुन फोर Unityको आर्गेनाइज करें
एकता के लिए दौड़ यही तो सरदार साहब का उनको स्मरण करने का उत्तम मार्ग है क्योंकि उन्होंने जीवनभर देश की एकता के लिए काम किया
मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि 31 अक्तूबर को रुन फोर Unityके ज़रिये समाज के हर वर्ग को देश की हर इकाई को एकता के सूत्र में बांधने के हमारे प्रयासों को हम बल दें और यही उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी
मेरे प्यारे देशवासियो नवरात्रि हो दुर्गापूजा हो विजयादशमी हो इस पवित्र पर्वों के लिए मैं आप सब को हृदयपूर्वक बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ